घर चारों तरफ से प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ है।

नदी के बीच में बोट लगा है।

यहां हम बिजली की तारों और खम्बो को भी देख सकते हैं।

जहां पटरी लगी हुई है।

बाहर छोटा सा एक दो पौधा देखा जा सकता है।

यह एक ईसा मसीह की प्रतिमा है।

बिल्डिंग का कलर येलो और वाइट है।

यहाँ बाहर सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ा है।

यहां इंद्र धनुष भी देखा जा सकता है।

यहा साइड में एक छोटी सी मैदान भी है।

यहां हम भगवान की छोटी छोटी मूर्तियां भी देख सकते हैं।

यहां कपड़े सभी तरह के ट्राउजर मिल सकते हैं।